याम देख सकणु एक बाग छू जैका जाल मा बंद कर्या छे लागरा छै तत्ला जानर घर छू जाँ ई जानवरों को धैर्य छे।

या आप देख सकणू लोहा क बडू गेट छू जैमा रंग न लागरे छ ततिला कुछ समान ले बिखरु छू।

जें तें घर बनोंण में प्रयोग करणु तो हम केह सकणु यां कैक घर बणनु।

यअमा देख सकनो त दिले एक छोट मोट दुकान जेस छो जेसमा चा बिस्कुट धरी छे यू वो स्थान छू जा में लोग बाग चाह नाश्ता करणु।

यखे दुकान नाम ले छू तंदूरी चाय स्पेशल ।

बहुत सारी मोटर बाईक थार छ--

लाल सफ़ेद रंग की बस छु लागेल छ या कथ्य स्थानीय बस अड्डा छु।

यहां हम देख सकणु की लोग बाग की बहोत ही भीड़ छु लोग अफ़ों घर की छतों में छु और बीचों बीच एक झांकी जैसी दिख रही है जै में बहोत सारे आदमी छु।

या हम देख सकणा मेज मा बढ़िया बढ़िया ट्रॉफी धरी छे अतिला रंग बिरंगा गुब्बारा ल छो।